अंजूर में हमें घडी लगी हुवी उपर दिखाई दे रही है आजू बाजू हमें पेडे दिखाई दे रहे है और हमें खंबा भी दिखाई दे रहा है एक साईड में।

हमे यहाँ पर एक स्टेज दिखाई दे रहा है। स्टेज पर रेड कलर की मैट बिछी हुई दिख रही है।

पैंजामा और कुर्ता पहनें हुए है। एक लड़का येल्लो कलर का कुछ रखे हुए है और उसमें से निकल रहा है। येलो कलर का तार दिख रहा है।

हममें जो हू पर र र एक बाईक खाडी दिखाई दे राही है सकूटी दिखाई दे राही है। और हमें --

हमें यहाँ पर बहुत सारा पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है और नदी या नंदा जि की फोटो लग रही हैं।